यहां पर मंदिर है यहां पे बहोत सारे लोग आए हुए हैं।

यहां पर पिलर है यहां पर आदमी व्हाइट कलर का पहना हुआ है।

यहां पर एक शादी हॉल है जिसके नीचे रेड कलर का कार्पेट बिछाया गया हैं।

यहां पे बगल में एक बहोत सारी सजाए हुआ है लाइट्स आगे बहोत सारी कार है।

यहां पर एक बोतल फेंका हुआ हैं यहां पर ईटा है।

यहां पर फंक्शन में एक लड़की भारत माता बनी है।

यहां पर बच्चे भी है यहां पर कुछ औरतें भी बैठी हुई है मंदिर का गेट खुला हुआ है।

नीचे जमीन है वहां साइड में बहुत सारी कारें लगी हुई हैं बगल में एक और बिल्डिंग है।

सीढ़ी है वहां वहां पता नहीं बाइक्स

बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं डब्बो का कलर ऑरेंज ब्लू ग्रीन --